दुकान के बाहर शेड डला हुआ है वहाँ पे दो-तीन गाड़ी है बाइक खड़ी है स्कूटी खड़ी हुई है अंकल है वाइट कलर की टी शर्ट पहनी है उन्होंने।

यहाँ पे एक लड़की है वह डाँस का पोस्चर कर रही है उसने हाफ टी शर्ट पहनी है पर्पल कलर की और ब्लैक कलर की पेंट पहनी है।